फ्लैड हैं फ्लैट के उ ग्राउंड फ्लोर पर हैं और बहोत सारे विंडोज हे विंडोज पर काच लगाये गये हैं।

पिलो है तीन चार एक टेबल है टेबल पर कुछ रखे गए हैं सोफास है।

एक लाइब्रेरी हैं लाइब्रेरी पर बहुत सारे पिलाई के शो केस श केस टाइप के बनाए गये हैं जिसमे बहुत सारे बुक रखे हुए हैं।

बालकनी टाइप सा है बालकनी पर कांच लगाये गये है बोहोत सारे नारियल के --

टेंक फैन है एल_ई_डी लाइट है उम्म अ दरवाज़ा है दरवाज़े पर कांच लगाए गए है निछ है निछ के नीचे सामान --

गेट के पास में खड़ी है गमले में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं दो तीन आदमी हैं बैलकुनी है सभी में कांच लगाए--

एक कारखाना दिखाया जा रहा है जिसमे बोहोत सारे मशीन है सीडी है।

एक लेडिस है जो बच्चे को ली हुई है साइड में हैंड बैग है एक गाड एक गाड़ी टाइप का है।

दो तीन एक मशीने है ऐरोप्लेन के ऊपर इण्डोगो लिखाया गया है दो तीन वर्कर्स है कुछ वो काम कर रहे है।

कारपेट बीचे हुए हे टाइल्स के काम किये गये हे लोहा का गिल टाइप का लगाया गया हे ब्लेक कलर सीडी में--

एक छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा है जिसके बहार पे एक बोर्ड लगाया गया है --

बोहोत सारे और भी मिटटी के गमले रखे हुए है एक रोत है एक गेट बना हुआ है एल अ तीना का --

टीना का बहोत सारा चदरा टाइप का और भी बहुत सारे घेरे हुए हैं कुछ कचड़े हैं पत्थर है मिट्टी--

विंडोज है जो खुले हुए है बोहोत सुन्दर से उसे डेकोरेट किया गया है अ ऑरेंज कलर के झंडे में --

लाइटिंग द्वारा ऊपर भी कुछ अ लाइटिंग वाईटिंग का काम किया गया हैं नीचे बहुत सारे ग्राउंड फ्लोर पर आदमी हैं।

पाइप का काम किया गया है उपर फोल्स सेल्लिंग है पंखे है।

एक घर दिखाया जारा हे जिसके बाहर बड़ा सा गेट हे जो लोहा का ग्रिल टाइप का बनाया गया हे ऊपर --

सेकंड फ्लोर पर एक आदमी है जो खड़ा है तारे दिख रहीं हैं पे फूलों के गांच दिख रहें हैं दो बाइक खड़े हैं एक बाइक पर कुछ सामान हैं।

ईटा बिछाया गया है और उसके अंदर पर बहोत सारे छोटे छोटे घास है घास है मट्टी है।

इस पर एक नर्सरी को घेरा गया है कपड़ो से और पोलो से--

एक बड़ा सा और पूल है रोड है रोड के साइड साइड में दोनों तरफ में ईटा के रास्ते --

तारो और लोहे का गिल्ली टाइप का किया गया है ।

और माइक रखा गया है एक लेडिज है जो बेठी हुई है ऊपर बोहोत बड़ा सा एक जुमर है जिसपर लाइटिंग का --

काम किया गया है कार्पेट बिछाए गए है घड़ी है से स्टैन्ड फैन टाइप के है ।

एक स्कूल दिखाया जा रहा है जो काफी पुराना है उसकी खिड़किया है खिड़कियों पर कांच लगे हुए है ऊपर में बोहत काले काले पढ़ गए है।

एक नाव पे कुछ आदमी खड़े है एक नाव कुछ --

एक बस स्टेंड दिखाया जा रहा हे जिस में कुछ बस खड़ी हे एक बस हे ग्रीन में येल्लो रेड में --

कुछ टब में पोधे वोधे लगाये गये है कुछ ऐसे ही बड़ा ब्रीच है ।

एक पेट्रोल पम्प दिखाया जा रहा है जिसपे बहुत सारी लाइटे जल रही है वाइटस कलर की --

अ ब पोल भी बहुत सारे एक बड़ा सा बिरिक्ष हैं एक घर हैं ईटा का सिर्फ बना हुआ एक पत्थर हैं मट्टी हैं।

बड़ी कड़ाई चड़ी एक छोटा चुला हे जिसपे एक छोड़ीया कड़ाई चडी हे कुछ मशीन वशिन हे एक बास हे जिस पर कपडे बंधे हुए हैं।

साइड में मट्टी है बहोत सारे कचड़ा हैं एक बड़ा सा नदी टाइप्स का है बड़े बड़े वृक्ष है छोटे मोटे घास है पौधे है पेड़ हैं।

एक लॉयर जा रहा है एक लड़की खड़ी है एक लड़का कमर पे हाथ दिए हुए खड़ा है एक छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा है।

शॉप के बहार कुछ बोर्ड से लगे हुए है एक हीरोज लिखा ह्गुआ है बोर्ड पर --

एक गेरिज दिखाया जा रहा है गेरिज में दो तीन स्कूटीया खड़ी है एक बाइक खड़ा है।

से वॉश कर रहा हे इधर साइड में और भी आदमी हे पानी की टंकी हे एक छोटा सा घर बना हुआ हे बोन्द्रीस में ब्लू कलर --

वाइट में एक ब्लेक में एक बड़ा बड़ा ब्रीच भी हे कुछ पोले हे कुछ ब्रीच सूखे हे कुछ छोटे मोटे हैं।

साइड में लोहे का पाइप दिया गया है और उसमें कपड़ों से उसे चारों तरफ से घेरा गया है बहोत सारे आदमी है लेडीस है जेंट्स हैं।

एक स्टेडियम ग्राउन्ड टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें नेट से प का चारों तरफ़ से मम --